निर्माण कार्य चल रहा है जहाँ लोग काम करने के लिए तैयार हो के खड़े हुए है ऊपर सफ़ेद काला आसमान दिखाई दे रहा है।

निचे भी सफ़ेद काली जमीन दिखाई दे रही है आस - पास बड़े -बड़े पेड़ लगे हुए है अमलतास के शायद अमलतास के पेड़ लगे हुए है।

किसी जगह का चित्र दिखाई दे रहा हे जिसमे छत बाँसों से बनी हुई दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति--

चित्र किसी तालाब के किनारे का है जहाँ औरतें पूजा की तैयारी कर रही है पूजा कर रही है आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है ऊपर पुल बना हुआ है नीचे तालाब में बच्चे खड़े हुए है उनके हाथ में मछली खेलने की बंसी भी दिखाई दे रही है।